ऊपर चढ़ने के लिए सीढियां दिखाई दे रही हैं। दीवारे जो की सफ़ेद रंग की है।

यह एक गार्डन का दॄश्य है जहाँ पर नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है। यहाँ मिट्टी फैली हुई है झाड़ियां दिखाई दे रही हैं पेड़ो की पत्तियां नीचे फर्श पर गिरी पड़ी हैं।

यह एक दुकान का दॄश्य है जिसके द्वार पर शटर लगा हुआ है कांच के शीशे --

यह एक बिल्डिंग का दॄश्य है जो की सफ़ेद रंग का है। यहाँ खिड़की दिखाई दे रही है दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ये एक काले रंग के है। इस घर के आस पास --

एक मेन्यू कार्ड रखा हुआ है जो कि सफ़ेद रंग का है उस पे कुछ लिखा हुआ है। ट्रे रखी है वो काले रंग की इसमें दो कप रखी है। कप में कॉफ़ी है।

ये कमरे का दृश्य जिसमे बेड दिखाई दे रहा है जिसपे सफेद रंग की चादर बिछी हुई है लाल रंग का कंबल दिखाई दे रहा है बीच में कुशन रखा है जो की नीले रंग का हैउसपर आकृती बनी है ।